देखो मंदिर ये आपको जो दिखाई दे दे रहा है यहाँ पर लोग जाते है अपनी अर्चना करते है पूजा करते है मनोकामनाए मांगते है मनोकामनाए आदमी कि पूर्ण होती है मंदिर मे प्रसाद चडाते है और भी जो बहुत साडी जो बाते हैं वो हम आपको अगले --